तालघर जैसा दिखाई देता है।

सामने केरम बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जोकि --

ये सब यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे हैं। बैठे हुए हैं।

यहाँ पे गिट्टी वगैरा या रेत वगैरा ल --

एक बाउंड्री बनी हुई है जिसके पास में बड़े बड़े पेड लगे हुए हैं।

वॉचमैन खड़ा हुआ है और कुछ सर वगेरा --

और यहाँ पर बड़े-बड़े बक्से रखे हुए है साउंड के लिए।

में बड़ी बड़ी विंडोज है और इसका कलर रेड और वाइट है।

और एक पेड़ दिखाई दे रहा --

बोहोत सारे पर्दे रखे हुए हैं और चेयर रखी हुई है।